और बाकी तीन चार पेड़ पौधे दिख रहे हैं ग्राउंड पूरा भरा हुआ है बच्चों से लोगों से--

और ये शायद पेट्रोल पंप का है इसमें एच_पी का साइन बना हुआ है ऊपर और एक ग्रेजुएशन आई_ए_एस अकैडमी का अ अ बोर्ड लगा रखा है।

ये तिरुपति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिख रहा है इसके बाहर दो बंदे खड़े हैं एक सीढ़ी से ऊपर आ रहा है बाकी यहां पे ऊपर जाने की सीढ़ियां दो फ्लोर दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर--

ये सीन शायद हॉस्पिटल का लग रहा है जहां पे बॉक्सेस बने हुए हैं ताकि डिस्टेंस मेंटेन हो सके यहां पे एक बंदा जाता हुआ दिख रहा है और एक बंदा फाइल लेकर खड़ा हुआ है।

वर्टिकल स्पेस में लगी हुई है दो और उसके बाहर का सीन दिखाई दे रहा है सड़क वगैर नजर आ रही है।

हां ये किसी बेल बिल्डिंग की गैलरी टाइप में दिख रही है इसमें एक सोफा लगा हुआ है जिसके ऊपर एक आदमी लेटा हुआ है।

इसमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने एक कैप लगा रखी है जिसके ऊपर बॉय लिखा हुआ है।

और तार वगैरह है इसमें कुछ पाइप्स लगी हुई हैं ऊपर इसके टावर टाइप में बना हुआ है कुछ--

और एक छतरी सी बनी हुई है जिसके अंदर लोग बैठ सकते हैं वहां पे कुछ बच्चे बैठे भी हुए हैं और एक पेड़ दिखाई दे रहा है और एक--

और इट रखी हुई है यहां पे और पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और एक कमरे के अंदर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है कुछ खिड़कियां वगैरह दिखाई दे रही हैं।

ये किसी हॉल की तस्वीर की तरह दिखाई दे रहा है इसके आसपास साउंड लगे हुए हैं और एक पंखा लगा हुआ है साइड वाला।

ये पेट्रोल पंप की तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें तीन लोग खड़े हुए हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं और एक औरत उन्हें देख रही है बीच में एक बाइक खड़ी हुई है और बाकी--

और इसकी साइड में भी ट्रॉफिस की कुछ अह उम्म पिक्चर्स बनी हुई है।

परफ्यूम हैं तेल वगैरा रखे हुए हैं साबुन भी रखा हुआ है इसके अंदर--

और इसके साथ में सड़क की हुई है और अभी जो बैंक है वो इस टाइम बंद दिखा रखा है सेटर्स वगैरह सारी डाउन हैं।

ये एक मंदिर की तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें सीढ़ियां लगी हुई है और सामने उसके एक टेबल खड़ी है और एक साइड में एक टेबल खड़ी हुई है।

और एक फ्रीजर रखा हुआ है इसके अंदर एक ड्रम रखा हुआ जो ऊपर से खुला है और कट्टे दिखाई दे रहे है इसके अंदर और एक तस्वीर लगी हुई है देवी मां की।

ये एक कमरे की तस्वीर है जिसमें एक बिस्तर लगा हुआ है और उसके ऊपर चद्दर रखी है तह करके और साइड में एक छोटी सी अलमारी रखी है जिसके अंदर मेकअप का सामान र--

हुआ है और नीचे मूर्ति रखी हुई है और उसके नीचे कुछ बुक्स रखी है नीचे चप्पल चप्पल रखी हुई है और उसके बेड के ऊपर एक सीसा रखा--

पोजीट्रोन का कुछ बोर्ड सा लगा हुआ है जिसके नीचे फ्री का कुछ लिखा हुआ है।

उसके ऊपर कुछ डिजााइंस कर रखा है और एक पेड़ दिख रहा है हमें तार दिखाई दे रही हैं।

मेरे सामने एक आदमी खड़ा हुआ है उसके स सामने से एक बाइक से दो लोग जा रहे--

ये हॉस्पिटल की तस्वीर है जिसमें तीन सिलेंडर रखे हुए हैं और एक पर्दा लगा हुआ है।

और एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने मास्क लगा रखा है इसके साथ में कुछ सामान--